अभी सारा बादल छाया हुआ है और यह मस्त लाल-लाल दिखाई दे रहा है और हरा-भरा --

हेलो गाइस देख सकते हैं यहाँ का व्यू भी काफी मस्त दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को और जबरदस्त देख सकते हैं और ये --

हेलो गाइस देख सकते हैं ये ग्राउंड है और काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं और यहाँ पे --

और यहाँ पे ऑनलाइन भी काम होते है ये बैंक है देख सकते हैं ।

और यहाँ छोटे छोटे बच्चे बड़े आते खाते --

बहुत ही सुपर डुपर --

हेलो गाइस देख सकते है यह माता का मंदिर है काफी बड़ी मंदिर है देख सकते है यहाँ पे भीड़ जबरदस्त --

स्वेटर वैगेरा लगा के आ गए हैं |

यहाँ का व्यू जबरदस्त दिखाई दे रहा है --

और यहाँ पे काफी सारे कार्स है गाड़ी वगेरा --